मीट की दुकान हैं इसमें मछलियाँ दिखाई दे रही है ए लेडीस चला रही है दुकान लेडीस बैठी हुई मोबाइल देख रही है।

दिखाई दे रहा है लाइट से विभिन प्रकार से डेकोरेट है लाइट की सजावट से हुआ है लाइट जल रही है रात का नजारा हैं।

मोबाइल चलाते हुए दिखाई दे रहे है एक काले कलर का आदमी है पेहने हुए है एक पीले और रेड जींस पहने हुए दिखाई दे रहा है हेयर कटिंग की दुकान है कैंची कंघे दिखाई दे रहे है।

दिखाई दे रहे हैं ये हॉल बैठा हुआ हैं हॉल का सिलिप डाली हुई हैं जो सफेद कलर की हैं उस हाल का कलर हरे रंग का दिखाई दे रहा हैं बैठा हुआ कुर्सी --